ए_टी_एम का नाम स्टेट बैंक ए_टी_एम है।

ए_टी_एम का आगे एक आदमी खड़ा हुआ है।

ये फोटो में एक बड़ा सा चर्च दिख रहा है।

आसमान में काला बादल भी है।

दुकान में एक आदमी भी दिख रहा है।

ऊपर में छोटा छोटा पंखा भी लगा हुआ है।

इसमें बहोत सारा लोहा का सामान लोग दिख रहा है।

ऑब्जेक्ट का आगे छोटा छोटा कच्ची लॉन भी दिख रहा है।

पीछे में एक बिल्डिंग दिख रहा है।

आसमान में बादल भी दिख रहा है।

ए फोटो में एक गवर्नमेंट ऑफिस दिख रहा है।

एक लाइटिंग वाला रथ जैसा भी दिख रहा है।

ये कोई रूम का फोटो लग रहा है।

फोटो में बोट में प्लाट भी दिख रहा है।

सफेद कलर का शर्ट पहना हुआ है।

रेस्टोरेंट का कलर व्हाइट है।

साइड में एक वॉश बेसिन भी दिख रहा है।

बिल्डिंग का साइड में गच्छी लोग भी दिख रहा है।

इस फोटो में एक बिल्डिंग दिख रहा है।

उनका दीवाल पे एक ए सी भी लगा हुआ है।

टेबल और चेयर लकड़ी का बना हुआ है।

जिम का कलर रेड है।

दुकान का अंदर बहुत सारा सामान भी दिख रहा है।

गेट को फूल से सजाया हुआ है।